एक हाथ से बल्ला पकड़े हुए हैं। गणेश जी के पैर के पास में चूहा बैठा है। पैर के एक साइड में लड्डू रखा हुआ है जो बहुत सुंदर लग रहा --